सामने हम देख सकते हैं एक गाड़ी दिख रही है उसी के पास हम देख सकते हैं एक बंडी है चाय की वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

पानी की उस तरफ दूर में हम यह भी देख सकते हैं की कुछ नज़र आ रहा है जैसे की पेड़।

और हम देख सकते हैं बहार मोटर साइकिल भी रखी हुई दिख रही है एक व्यक्ति जाता हुआ नज़र आ रहा है।